और हरा कलर की घास है जो कि दिखने में काफी अच्छी--

व्हाइट कलर की है रोड है ये अपना मुंबई में आ जाती है ये एक स्टेशन है इसको ऐसे डेकोरेट किया गया है कि जैसे घर लग--

मतलब यहां पर बहोत सारे लोग अपना अपना पैसा डोनेट करने आते है एक रुपया दो रुपया दस रुपया बीस रुपया जो कि दिखने में काफी अच्छे लगते है।